बर्थडे डेकोरेशन है और बलुन्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर येलो पिंक कलर --

अ एरिया वो बहोत अच्छा है लाइक ग्रीन ग्रीनरी बहोत ज्यादा है कुछ फ्लावर्स भी है जो रेड और येलो दिख रहे है और यहां पे मुझे--